दीवार पे लिख रहा लिखा है वाशिंग मशीन में एलईडी लाइट यहां परामत होता है।

साथ ही साथ बहुत रंगों की खिलौना यहां सजा के रखा हुआ है।

यहां एक बड़ा घर दिख रहा है घर के सामने से एक रास्ता है घर के पास एक पेड़ है।

ये बुक स्टोर है बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है साथ ही साथ पेन वगैरह रखा हुआ है।

दीवार के सामने भारतीय झंडा लहरा हुआ है।

दीवार के साइड में बहुत सारा पेड़ है दीवार के पीछे बहुत बड़ा --

पोस्टर के चारों तरफ पेर है पोस्टर जिस जगह पे है वहां पे छोटा छोटा घास उठ रहा है।

टेबल के पास दो और चेयर रखा हुआ है बैठने के लिए।

यह एक पूजा के लिए जगह है एक आदमी पूजा कर रहा है।

यहां पे बहुत सारा पोस्टल लगा है।

ये एक जिम का बहुत बड़ा जगह है जहां पे।

अर्जुनदास स्कूल हैयहाँ पे फंक्शन चल रहा है।

भारत की झंडा लेकर खड़ा है।

यह एक स्टैचू है स्टैचू के ऊपर ड्रेस .

बहुत सारे ड्रेस यहां रखा हुआ है साथ ही साथ बहुत अच्छे से लाइटिंग भी आ रही है।

बहुत सारे लोगों की भेड़ लगी हुई है।

यहां पे पत्तागोभी का एक बहुत बड़ा बगीचा है।

उसका एक दुकान है जहां पर बहुत सारा खाने की सामान है।

कोल्ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए एक बड़ा फ्रिज रखा है साइड में पेन--

यह बैटरी भी है बहुत सारा सामान--

रात की टाइम है इसीलिए दुकान की लाइटिंग बहुत अच्छी से विजिबल हो रहा है।

साइकिल अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है।

साइड में एक बर्तन में पानी रखा हुआ है।

और पेड़ के पीछे भी बहुत सारा छोटा-छोटा पेड़ है एक कार भी रखा हुआ है।

यहां एक बड़ा घर दिख रहा है घर के नीचे एक दुकान है दुकान में बहोत सारा खाने की समान--

घर के सामने से बहुत सारे लोग खड़े हैं।

यहां एक बड़ा बैंक दिख रहा है नेम प्लेट एसबीआई का लिखा हुआ है।

उसके नीचे ये नो कैश लिखा हुआ है।

दो कपल्स यहां खड़े हैं ब्रिज के पास बड़ा।

ब्रिज के पीछे एक बड़ा पहाड़ है।

बर के ऊपर बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है साथ मिरर भी लगा हुआ है।

यहां पे एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है घर के आगे बहुत सारे लोग खड़े हैं।

कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं बीबर में एक वाइट बोर्ड है वहां पे टीचर पढ़ा रहा है।

तीबर में एक भारत मानचित्र का पोस्टर लगा हुआ है तिबर के।

साथ ही साथ ऊपर भी पंखा हैऔर लाइट भी है।

ये एक कमरा है कमरे की दीवार में बड़ा बड़ा मिरर लगा हुआ है मिरर के सामने बड़ा बड़ा कुर्सी है।

साथ ही साथ घर के सामने आके बहुत सारे लोग बैठे हैं।

उसके साथ-साथ सूट भी रखा हुआ है।

यहां बहुत सारा सब्जी पड़ा हुआ है गाजर टमाटर।

साथ ही साथ कंचा केले बहुत सारा--

फ्लोर की लेफ्ट लेफ्ट साइड में एक टाटो का।

यहां बहुत सारा बस खड़ा है साथ ही साथ ऊपर लोहे का छत भी है।

एक कमरा दिख रहा है कमरे की दीवार में पोस्टर लगा हुआ है।

और बहुत सारे जेरेक्स की मेसिन के साथ-साथ पेपर भी हैं।

दुकान के ऊपर सुपर डोनट्स लिखा हुआ।

दुकान की आगे प्लेन सा चट्टान है।

बाहर भी बहुत सारा मूर्तियां है।

बड़ा सेर का मूर्ति है जिसका रंग सफेद है।

बहुत बड़ा लोहे का फैक्ट्री है।

साथ ही में बहुत सारा लोहे का रो--

विंडो दिख रहा है जो कि कांच का बना हुआ है।

पार्लर के सामने तो बच्चे बैठे हैं।

दुकान के आगे बहुत सारा जूते का सैंपल रखा हुआ है।

यहां बहुत सारा जीम की एक्सेसरीज रखा हुआ है।

साथ ही साथ जिम की डोर जो है वो कांच का है।

ये एक बुक्स का दुकान है बहुत सारा बुक रखा हुआ है साथ ही साथ पेन पेंसिल सब।

रखा है दीपर पे बहुत सारा बटरफ्लाई कीपेंटिंग्स लगा हुआ है।

ये बहुत बड़ाड्राइंगरूम रूम दिख रहा है।

बहुत बड़ा बड़ा सा ट्री भी रखा है।

साथ ही साथ दुकान की दोनों तरफ से एक पोस्टर लगा हुआ है।

के ऊपर ट्विल्स का नाम प्लेट लगा हुआ है।

मिरर के सामने बहुत बड़ा चेयर है।

जगह है दुकान के ऊपर बड़ा डिस्प्ले भी लगा हुआ है।

डोर में एक अच्छे से डिजाइन किया गया है।

एक पिंक कलर का साइकिल आगे खड़ा है।

बड़ा सा एक फील्ड है फील्ड के दोनों तरफ बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

यहां पे एक साड़ियां दिख रही है साड़ियां के ऊपर और सेम डिजाइन की चार साड़ियां हैं।

दोनों तरफ और भी सड़िया रखा हुआ है।

साड़ी को एक तरह से बिछा के रखा हुआ है।

इसमें की बहोत सारे वैरायटीयां दिख रहा--